और सामने में मुझे एक बड़ा सा मूर्ति भी दिख रही है।

इस तस्वीर में मुझे एक बड़ा सा दुकान दिख रही है।

यहां पर मुझे खिड़की भी दिख रही है और सामने में मुझे बहुत सारा इंसान लोग भी दिख रही है।

इस तस्वीर में मुझे चार ठो इंसान दिख रही है।

इस तस्वीर में मुझे बड़ा सा बिल्डिंग दिख रही है।

ये बिल्डिंग को ऑरेंज और ब्लू कलर से पेंट किया हुआ है।

सामने में फ्लावर पोट भी रखे है । उसके पौधा सब भी रखे है।

राइट साइड में बहुत सारा बुक्स भी रखे हैं।

सामने में बैठने के लिए चेयर भी लगा हुआ हैं।

ये घर में बहुत सारा खिड़कियां सब भी है दरवाजा सब भी हैं।

ऊपर में लाइट भी जल के है सामने में बैठने के लिए चेयर भी रखा हुआ है।

नीचे में ग्रीन कलर के कारपेट भी बिछाया हुआ है।

इस तस्वीर में मुझे बस स्टेशन दिख रही हैं।

दुकान के सामने एक इंसान भी बैठा हुआ है।

इस तस्वीर में मुझे एक बड़ा सा प्ले ग्राउंड दिख रही है।

फूल के कलर येलो है। बड़ा बड़ा पेड़ सब भी है।

सामने में बहोत सारा गोभी सब भी है बनाना ऑरेंज भी है।

इंसान के हाथ में चाभी भी है।